ये एक मकान है। मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगल-बगल दीवाल है। दीवाल के ऊपर रॉड लगा हुआ है। पीछे साइड काफी बड़ा एक सफेद हरे कलर का पट्टी। उसके अगल-बगल काफी लोग खड़े हुए हैं।